एक और पिक्चर हमारे सामने यहाँ है जहा लोग हॉस्पिटल में खड़े है।

ये पर्वत देखने में तो बहोत ही खुबसूरत नजर आ रहा है यहाँ पर लोग --

घाट बनाई देते हुए लोग दिखाई दे रहे है ये घाट किसी तालाब का हो सकता है।

एक ऑफिस की पिक्चर है जहा पे खुर्ची लगी हुयी है.

ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोहोत बडासा रेस्ट्रॉ है.

एक और पिक्चर की अगर हम बात करे तो यहाँ हमे --

एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है और ये जो की हे।

ये व्यक्ति लोगोंको घरों में साग और भाजी डिलीवर करने का काम करता है ये व्यक्ति जो है साग भाजी--

एक गार्डन का बोहोत खूबसूरत सा पिक्चर है यहाँ पे हम को की और एक ही लोग इस पिक्चर में दिखाई दे रहे है।

लेकिन जब झाहिर सी बात है की जैसे जैसे दिन बीतता जायेगा --

लोगों की आवा जावा यहाँ बढ़ती जाएगी ऐसी जगह में अवास से ही लोग आना पसंद करते है.

इस बिल्डिंग में अभी फ़िलहाल तीन या चार दुकान ही खुली है।

इसीलिए ये दोनों बोर्ड हमको एकसाथ नजर आ रहे है।

बात करे अन्य पिक्चर की तो अभी हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर --

एक और पिक्चर की अगर हम बात करे तो यहाँ हमारे सामने एक --

एम्_ एफ मोटर का सर्विस सेंटर है और ये एम्_ एफ मोटर का सर्विस सेंटर में --

एक दूसरे पिक्चर की बात करे तो यहाँ पे फिरसे हमारे सामने--

एक अन्य पिक्चर में हम देख सकते है की एक --

क्लास के बच्चे है जो की आय_ टी_ आय क्लास के बच्चे है.

यहाँ उनके टीचर उनको ट्रेनिंग दे रहे है की किस प्रकार हम --

एक दूसरे पिक्चर में हम देख सकते है की अभी हमारे सामने एक बोहोत बड़ा सा होटल --

और नजाने कितनी सारे कोर्सेस की कोचिंग यहाँ दी जाती है बच्चे अपना भविष्य तयार करते है.

एक और पिक्चर की अगर हम बात करे तो हमारे सामने एक बाइक है.

यहाँ चाय और कॉफी दोनों लोगोंको उपलब्ध कराई जाती है।